बांस का भी पेड़ है।

चारो तरफ पेड़ भी है हरा भरा।

जमीन में टाइल्स लगा हुआ है।

गाड़ी के पीछे शो प्लांट लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा फील्ड है।

एक व्यक्ति पीला जर्सी पहन के खड़ा हुआ है।

गेट में दोनों साइड हाथी का चित्र छापा हुआ है।

पख्खल के नीचे सीढ़ी बनाया--

यह एक सामने से सीढ़ी बना हुआ है।

जमीन में दरी बिछाया हुआ है।

बहुत सारा पक्खल भी है।

सभी खिड़की लोहा का है।

ये दो ताला स्कूल है।

काला कोट पहन के एक आदमी खड़ा है।

इस हाल में रंग बिरंग का कपड़ा से सजाया हुआ है।

यह एक किराना दुकान का होलसेलर है।

इसमें बहुत सारा रैक बना हुआ है।